और बहुत झंडा है और दुर्गा उम्म उम्म मां देवी बना हुआ है अच्छा लग रहा है।

एक पुराना घर है। लोग देखने आ रहा है बोलता है कैसे ठीक होगा ? ये तो घर कौन बनाया और क्या क्या लगेगा। अच्छा वो जो और जो कैसे होगा ठीक क्या हम करेंगे जो ठीक होगा और बहुत सारा ईटा पड़ा हुआ है वहाँ पुरा सबकुछ पड़ा हुआ है ईटा तो बिखर गया है घर तक।

और घर भी है और दुकान भी है बहोत सारा लोग चल रहा भी है घूर रहा है।

एक लोग भी है लड़की लेडीज चल रहा भी है फूल पड़ा हुआ भी है मोर नाच रहा है मोर पंख हिला रहा है और लोग देखने फोटो खींच रहा है अच्छा लग रहा है।